मुझे इस फोटो में बहोत सारी इमारतें दिखाई--

मुझे इस बैंक में बहोत सारे कांच दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कुर्सियां और टेबल दिखाई दे रहे हैं। मुझे--

मुझे इस फोटो में लड्डू दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो में लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे पेपर दिखाई--

मुझे इस फोटो मे पंद्रह लाइटें दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो --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

मुझे इस फोटो में जिम दिखाई दे रहा है।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

बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही है।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।